इस इमेज में एक पहाड़ दिखाई दे रहा है। इस इमेज में पहाड़ पर एक लड़का बैठा हुआ है। इस इमेज में जंगल जैसा दिखा रहा है नीचे। इस इमेज में बादल दिखाई दे रहे हैं। इस इमेज में बहोत से घर दिखाई दे रहे है। इस इमेज में बहोत सी --

इस इमेज में हमें देखकर होटल जैसा लग रहा है जिसमें दो कुर्सी रखी हुई हैं। ब्लैक एक गेट लगा हुआ है। एक --

इनमे चारों तरफ हरियाली है। इस इमेज मे एक अल्टो खड़ी है। इस इमे यहाँं पर चार गमले दिखाई दे रहे यहाँं एक गड्ढा दिखाई दे रहा है हमको।

इस इमेज मे इसको देख कर लग रहा है ये अस्पताल हो। इस इमेज मे दो कुर्सी डली हुई हैं। एक दो ब्लैक डली एक येलो डली हुई है एक --